यहाँ पर हम लोग एक खाली बस स्टैंड देख पा रहे है।

यहाँ पर हम लोग देख पा रहें हैं एक साइकिल जो की एक ग्राउन्ड के साइड में खड़ा हुआ है।

वह उसके सामने एक बड़ा सा पिक्चर भी टंगाया हुआ है।